ये एक ऑफिस है जिसमें दो सिस्टम लगायें हुए है और उसके नीचे--

यहां पे एक आदमी काम कर रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पेंट पेहना हुआ है।

पीछे बहोत सारे वर्क्स अपना काम कर रहे हैं।